इसके बाहर में एक आदमी खरा है टीशर्ट हाफ पैंट लगा के।

एक औरत सलवार सूट पहन के खड़ी है।

उनके हाथ में झोला है।

तो इंसान खड़ा होकर रिपेयर कर रहे हैं।

स्कूल का कलर व्हाइट और येलो है।

ऊपर में छोटा छोटा टेडी टांगा हुआ है।

साइड में एक डस्टबिन रखा हुआ है।

दुकान में खाने पीने के बहोत सारे आइटम है।

एक इंसान खड़े हो के पैसा गिन रहा है।

ये एक हाई रोड है।

बहुत सारे करंट के तार हैं।

ऑटो भी पार्क किया हुआ है।

जिसके पीछे घर जैसा लग रहा है।

जिसका वॉल का कलर वाइट और ब्लू है।

ये एक रात का वक्त है।

गेट के दोनों साइड में एनिमल बनाया हुआ है।

यहां पे बड़ा बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

नीचे पानी का फवारा से सजाया है।

पीछे पहाड़ जैसा दिख रहा है।

गोल्डा चिंगरी रोही माछ और बहुत सारे।

रास्ते के पास एक शॉप जैसा है।

पीछे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ है।

ऊपर में लाइट जल रहा है।

ए रास्ता है जिसके सामने एक दुकान है।

एक गैस सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ डेकोरेशन किया हुआ है फूल का।

दो पिलो है व्हाइट कलर का।

रास्ते के पास कुछ पिकअप वैन खड़ा है।

ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है।

और पांच छः आदमी दिखाई दे रहे हैं।